एक ठो दिवाल है बड़ा वाला जो बना हुआ है उसके ऊपर में भी मिट्टी का ईटी दिख रहा है।

चारों तरफ कुर्सी पड़ा है और टेबल के ऊपर एक ठो फूलदानी सजा के रखा गया है।

झरका है और झरखे में वो जो लोहा का लगा हुआ है और दोनों साइड में बैठने के लिए आदमी लोगन का बना हुआ है।

रेड कलर का बुड़ है उसमे सफेद कलर मे लिखा हुआ है उड़िया मे सिटी लाइव लिखा हुआ है।

पीछे तरफ मंदिर दिख रहा है और सामने में एक ठो बड़ा वाला पेड़ गया है और साइड में भी बड़ा वाला पेड़ एक ठो है।

रेड कलर का उसमें व उड़िया में लिखा है अह--